कहीं यहां पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।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

वहीं सामने एक सिनेपोलिस का बोर्ड भी लगा हुआ है वहां पर दो से तीन लोग--

गुब्बारों से सजाया गया है यहां पे गुब्बारे--

के अलावा यहां पर कुछ जमीन पर--

इस चित्र में एक आदमी और एक औरत--

इन गमलों के नीचे एक सिल्वर रंग का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यहां पे कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

लोग यहां पर झूला झूलते भी दिखाई दे रहे हैं।

वो कागज के टुकड़े रखे हैं क्यू_आर कोड भी है।

इसका मुख्य द्वार एक तरफ से खुला और दूसरी तरफ से बंद--

इस चित्र में काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।